हम्म इस ए.टी.एम . के बाहर आप को कुछ गाड़ियां और एक कार नज़र आ रही है एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा है ।

इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको चार लड़कियां नज़र आ रही है जो की उम काफी खूबसूरत लग रही है ।